ब्लू कलर का शीशा है दीवाल है ऊपर बोल बरेत है चाँद का छाप है दीवाल पर और बैलून है।

पिलर है लागल तार है बिजली के खूब लाइट देत है| नीला कलर के है एगो वाइट कलर के है दु दुगो मोटरसाइकिल है।

बहुत बड़का बिल्डिंग हई उनमे बहुत तीन तल्ला बिल्डिंग हई नीचे सीढ़ी लागल हई।

-- ऊपर कर्कट हई नीचे कुछ बिछावल हई कटोरी रखल हैकैलेंडर--

सीडी हाय दुकान हाय दुकान में तेल वुल हाय बोर्ड लागल हाय लाईट लागल हाय उज्जल कलर के दीवाल हाय बगल में घर हाय।

औरत हाय पोस्टर लागल हाय।

एगो दुकान हई ऊपर भूकभुकिया बोल लागल हई चार-पाँच गो आदमी सब हई गाड़ी हई जमीन हई रात हई पेड़ हई ।

दुकान हाई गाड़ी लंबी कार मै वाईक बोर्ड वर्ड हुई बौरूद हाई ग्रिल लागल है लोहा उहा हाई।

पेर है मरघटी है जानवर सब है नीलगाय है हरियल-हरियर घास है आसमान है।

दुकान हई मिठाई की दुकान हईरसगुल्ला रखल हई अंडा हई ब्रेड हई।